बिल्डिंग दिख रहा हैं एक इसमें तड़का लेमन तड़का लिखा हवा हैं ये। कोई रेस्टोरेंट हैं शायद।

ये एक इमेज दिख रहा है जिसमें एक ग्राउंड नजर आ रहा है ये शायद किसी कॉलेज है का यहां बहुत सारी गाड़ियां रखी हुई है बाइक --

और यहां पे मैं देख रही हूं कि एक बच्चा सेल्फ़ी ले रहा है जो ब्लैक कलर का शर्ट पेहना है।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

और पर्दे भी हैं यहां ग्रे ब्राउन कलर के एक सो--

एक शॉप को देख रही हूं मैं इस शॉप में--

बैठे हुए हैं साथ खाना खाने के लिए बैठे हैं।

मैं एक दुकान को देख रही हूं जिसमें--

एक रैक जैसे में भी कुछ कुछ शीशी रखा हुआ है ग्रीन ग्रीन कलर का शीशी के अंदर और ब्लैक कलर का ढक्कन है।

और झील के बीच में कोई टापू है शायद टापू जैसा जमीन--

बिल्डिंग्स को देख रही हूं फ्लैट्स को देख रही हूं बालकनीज को देख रही हूं और यह बिल्डिंग्स है क्रीम कलर के --

और एक पात को भी देख रही हूं और खुला आसमान को देख रही हूं और उधर साइड में बहुत--

क्लास को देख रही हूं जहां कूलर लगा हुआ है।

रूफ भी है और ये ग्रीनस कलर मे है थोड़ा ग्रीनस कलर